यहाँ पे हमे डस्टबिन दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहोत सारा कचरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमे डॉक्टर दिखाई दे रहे है जो की पी_पी किट पहने दिखाई दे रहे है यहाँ पे हमे छत दिखाई दे रही है जहाँ से रोशनी आते दिखाई दे रही है यहाँ पे हमे सीजर दिखाई--

एक सड़क भी दिखे दे रही है पास मे हमें कुछ ओर घर भी दिखाई दे रहे है यह पे बिजली के तार दिखाई दे रहे है यहाँ पर खुला आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें एक झंडा भी दिखाई दे रहा हैं।

ताब पढ़ रहे यहाँ पर उनके बैग दिखाई दे रहे है यहाँ पे हमें पंखा दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें खिड़की दिखाई दे रही है यहाँ पे हमें सीनरी दिखनर दिखाई दे रहे --

बहोत सारे बैनर दिखाई दे रहे है बैनर पे ए.पि.जे अब्दुल कलाम सामने विवेकानंद जी तस्वीर दिखाई दे रही है नीचे ग्रीन कार्पेट दिख --